कुछ पोस्टर लगे हुए हैं कुछ पौधे लगे हुए हैं।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

कॉलेज दिखाई दे रहा हैं जो कि गुलाबी रंग का पुता हुआ हैं।

कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे।

पार्लर का नाम अपना आइसक्रीम पार्लर हैं।

एक माल दिखाई दे रहा हैं।

कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा हैं।

कुछ कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं।

कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं।

कार्यालय दिखाई दे रहा हैं जो कि नीले रंग का पुता हुआ हैं।

इस चित्र में हमें एक स्टैंड दिखाई दे रहा हैं जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं।

जिसके किनारे पे कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं एक लोहे की बाउंड्री बनी हुई हैं।

दुकान के साइड में एक लोहे की सीढ़ियां गई हुई हैं।

इसके अंदर डेकोरेशन करा हुआ हैं एक पंडित खड़ा हुआ हैं।

जिसके बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

काफी बड़ा चर्च दिखाई दे रहा है जो कि क्रीम कलर का पुता हुआ है।